इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक गांव का चित्र है जिसमें की देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन है जो कि किसी गांव में बना हुआ है।

इस प्रदर्शनी को देखे दिखाई दे रहा है की ये किसी बिल्डिंग की प्रदर्शनी है इसमें हम देख पा रहे है अनास टावर नाम लिखा हुआ है और एक --

इस फोटो देख पा रहे कि ये फोटो एक हेल्थ केयर मतलब स्किन केयर की शॉप है।

और इस क्यू_आर कोड में हमें दिख रहे हैं फोनपे व्हाट्सएप गूगल पे पेटीएम और एच_डी_एफ_सी बैंक भी दिखाई दे रहे हैं और ये की तरफ से आया है।

को देख के लग रहा है की ये कोई गराज है पर ये कोई दुकाने लग रही इसकी साइड वाली लगता है कि ये कोई शॉप हो सकती है की आइसक्रीम और की जिसके ऊपर --

जो कि लोगो में दिखाया जा रहा है और यह बार्बर भी हो सकता है क्योंकि इसमें कैंची दिखाई दे रही है और कंगी भी दिखाई दे रही है तो ये बार्बर भी है पार्लर भी है दोनों साथ में हैं।

ओ ये धीरे धीरे काला पड़ने लगा है और जो कि इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है और पेड़ के नीचे की छाएं भी दिखाई दे रही हैं।

अपने टाइम में सलाते होंगे और उन्होंने दि लिखा रखा है कि ऊपर भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसमें की फोटो का कलर यूज किया गया है वो कलर है पर्पल गहरा पर्पल कलर है।

इस दुकान के पोस्टर लगाया गया है उस पोस्टर का कलर ब्लैक है और फोंट का कलर है जो की गोल्डन कलर का है।

यह एक बहोत ही सुंदर घर के चित्र है जिसमें की देख पा रहे हैं कि घर के दीवारों के और घर के खुद के अंदर ही --

ब्राउन कलर यूज किया गया है और क्रीमी कलर यूज किया गया है जोकि इस घर को बहोत ही बढ़िया अट्रैक्टिव और लुक दे रहे हैं और अंदर देख सकते हैं इन्होंने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं।

इस फोटो मे देख पा रहे है कि एक हारवेर हार्डवेयर की दुकान है जिसमें की कूलर और बेचे जाते है जिसमें की हम देख ही पाये है कूलर के साथ साथ बहोत ओर--

इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये कपड़े की शॉप का फोटो है जो कि फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं साड़ियां और है।

इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक योगा क्लास का फोटो है जिसमें हम देख ही पा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जोकि योगा कर रहे हैं।

ये किसी पैलेस का नाम से कुछ बनाया हुआ है जिसमें कि हम देख सकते हैं पैलेस में मतलब हम देख सकते हैं इधर साइड में --

हां ये एक होटल है जिसमें कि हम देख सकते हैं इसमें रूम रेस्टोरेंट सब एक साथ ही है ये जिम भी है इसके अंदर हेल्थ क्लब भी है।

और ऊपर देख सकते हैं कि एक गन भी दिखाई दे रही है जो कि दीवार के ऊपर लटकी हुई है और लाइटिंग और भी बहुत बढ़िया तरीके से है इस घर में।

इस फोटो को देखके लग रहा है कि ये किसी शॉप है जोकि मेले में लगी हुई है जिसमें हम देख पा रहे हैं मिठाई और भी लगी हुई है और जो भी --

डबों के अंदर जो किसी से श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं उनको दे सके और एक आदमी है जोकि पानी पी रहा है एक आदमी जोकि --